आदमी मन बोतल का डिस्पोसल कागज मे फेक दी हैं।

बोलीवॉल खेलीलाल अरि इ फाटल टूटल घर मन का का ला खेल कुदाय इ हरा-भरा पेड़ मन हे के --

पिज़्ज़ा मन खाईक आय हे तोहरे मन देख सकल की मस्त सुन्दर सुन्दर आदमी मन बैठ के पिज़्ज़ा उज्जा खात हैं।